यहां पहाड़ पत्थरों को चीरते हुए पानी बह रहा है।

यह एक जिम सेंटर है और यहां पर बहुत सारा आदमी और बहुत सारा लेडीज भी जिम करने आती है।

इस जगह को पूरी अच्छी तरह से घेर दिया गया है।

यह एक दुकान है और इस दुकान का नाम अमूल चौधरी आइस पार्लर है।

यहां पर बहुत सारा आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है।

अ एक बैंक है और इस बैंक का नाम बैंक ऑफ़ बड़ोदा है।

यहां पर बहुत सारा आदमी भी है और यहां पर बहुत सारा चिटमिटिया लाइट भी लगाया गया है।

वहां पर मशीन के ऊपर में मोटरसाइकिल साइलेंसर भी लगा हुआ है।

यहां पर एक आदमी ने बैग टांगा हुआ है।

यहां पर एक लोहे का खंबा है और यहां पर बहुत सारा पोस्टर भी लगाया गया है।

एक दुकान है और यहां पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

यहां पर बहुत सारे पानी भी है और आसमान नीले कलर का है।

दुकान के बाहर में भी बहुत सारा सामान रखाया रखा गया है।

यहां पर एक एल_इ_डी बल्ब भी लगाया गया है।

यहां पर बहुत सारा काठ भी है।

यहां पर एक स्कैनर भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहुत सारा लाइट भी लगा हुआ है और यहां पर एक खिड़की भी है।

यहां पर तराजू भी रखा गया है।

यहां पर बहुत सारे आदमी है और बहुत सारे लेडिस भी है।

नीचे में कारपेट भी बिछाया है और यहां पर बहुत सारे बैलून भी लगाए गए हैं।

दुकान है और इस दुकान का नाम मां भगवती भंडार है।

यह एक कोचिंग है और यहां पर बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं।

यहां पर एक बड़ा सा फोटो भी है उसमें माला चढ़ाया गया है और यहां पर एक कुर्सी भी है।

यहां पर बहुत सारा फल है जैसे केला सेव नारंगी बदाना।